लगा हुआ है चौकी देखने मे काफी सुंदर दिखाई दे--

पेड़ पौधा भी लगे हुए हैं छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ए--

हिरन हरिन भी दिखाई दे रहा है देखने में तो वह बहोत सुंदर ही लग रहा है।

यह एक ऐसा दिखाई दे रहा है देखने से पता चल रहा है कि रोड पर दो भैंस भी चल रही है।

गाड़ी बिगड़ा हुआ है या गाड़ी पर कुछ सामान लादे हुए लादने जा रहे है।

देखने में तो काफी सुंदर है यह शाम का लिया हुआ फोटो है।

यह एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से पता चल रहा है कि किसी झ--

देखने से पता चल रहा है कि यह शाम का फोटो लिया हुआ है।

देखने मे तो काफी सुंदर दिखाई दे रही है देखने से पता चल रहा है कि दिन का फो--